इसमे बैठी सब्जी हैं और साफ-साफ --

की दुकान है जिसमे गेंदा के फूल है। बड़ी-बड़ी मालाएं लगी हुई है लटकी हुई है।

काफी सुंदर है। हरियाली है यहाँ पर सारे में --

इस किसी कॉलेज का हैं या कोई पाड़-पार्क है बोहोत बडा है बोहोत दूर-दूर कुछ घूम रहे हैं आदमी --

जिम है शायद जिसमे एक लड़का खड़ा भी है। शीशे लगे हुई है। वर्कआउट मशीने हैं।

बड़ा बंद पड़ा रूम है जहां पे ऐसा लगा है जिस पे कुछ सामान रखा हुआ है।